खड़ा है। उसने टोपी लगा रखा है और शर्ट पहना हुआ है। पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

और सामने बोर्ड जैसे दिखाई दे रहा है और एक घड़ी दीवाल पर लगी हुई है। ऊपर एक पंखा भी दिखाई दे रहा --

और बस के आगे एक अंकल खड़े हुए हैं उन्होंने शर्ट पहना हुआ है और बगल में भी एक बस --

कुर्शी पे बैठा हुआ है उसने नीले रंग का टॉवल ओढ़ा हुआ है।